जो हरा-भरा दिखाई दे रहें हैं पेड़ पर वे बहुत अच्छे हैं और इस आकाश में बादल नज़र आ रहा है बहुत सुंदर दिखाई दे रहें हैं।

और नदी के किनारे बहुत सारे पेड़-पौधे हैं जो हरा-भरा दिखाई दे रहें हैं और यह नदी बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा --